और एक छोटा सा हॉल है इसपे पिलर लगे हुए हैं।

बच्चे छोटे बड़े बच्चे हैं यहां पे बहुत से टीचर हैं।

पीले कलर में रेस्टुरेंट लिखा हुआ है और यहां पर--

ये किसी की राशन की दुकान है।

ये एक क्लास की फोटो है जहां पर बहुत सी चेयर और आगे स्टडी टेबल रखा गया है।

रेड कलर का ट्रैकशूट एक ब्लैक शर्ट --

सामने एक लड़का खड़ा है दूसरी लड़की से बात कर--

फूलों का छोटा सा गुलदस्ता है और एक कॉपी पड़ी है टेबल पे--

और मेन गेट पर शीशे का मिलर बना हुआ है।